इस इमेज में एक बैडरूम दिखाई दे रहा है जहा पर एक बड़ी सी एल_ई_डी लगी हुई दिखाई दे रही है।

ये इमेज एक कॉफी कैफे की है जहां पे एक टेबल और चैयरे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर दो लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

और दो फ्लावर पॉट रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक और मूर्तियां रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर दो लोग नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं।